इस इमेजेस में बिल्डिंग्स है बिल्डिंग्स में रेक्टेंगल बना हुआ है जोकि रेड कलर का है।

और इसमें दो आदमी गाइडेंस कर रहें हैं देख रहें हैं की कैसे वर्क काम कर रहें हैं वर्कर ।

ये जो इमेजेज है ये यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहीं हैं और बिल्डिंग्स बनाने के लिए ऊपर इसमें लोहे की यहाँ पे लकड़ी का एक यहाँ पे लम्बे लकड़ी बने हुए हैं बांस के लकड़ी हैं यहाँ पे जो कि --

इसमें एक आदमी है जो की इसके कॉउन्सिलिंग कर रहा है यहाँ पे पहाड़ है यहाँ पे।

साइड में देख रहा है चार लड़कियों में से एक लड़की देख रही है तीन लड़की काम कर रही है।

ये पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पर कुछ आदमी हैं और यहाँ पे जाने लिए कुछ दरवाजा बना हुआ है कुछ खिड़कियाँ हैं जो कि ब्लू कलर की है।

इस वीडियो में आसमान है पेड़ है और यहाँ पे सूरज उग रहा है सूरज की जो रोशनी है वो ऑरेंज कलर की लाइट दे रही है।

पेड़ है पौधे हैं फ्लोर है यहाँ पे फील्ड टाइप का है ये सबलोग यहाँ पे रनिंग कर रहें हैं वाकिंग कर रहें हैं।

यह एक है के बाहर यहाँ पे बहुत सारे स्कूटीस हैं यहाँ पे कुछ स्कूटीस रखे हुए हैं।

तारे दिख रहीं है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है।

ब्लू कलर का पोस्टर ये लगा हुआ है लाइट ग्रीन भी है जो की इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊप --

ये एक मंदिर है मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा झंडा है रेड कलर का खड़ा है यहाँ पे झोपड़ी भी है।